और दरवाजे में पर्दे नजर आ रहे हैं।

जो की फॉरेस्ट का बंगला की तरह दिख रहा है।

और ऊपर नाम लिखा है बीरपड़ा राज्य सरकार अस्पताल।

यहां आगे की ओर गांव दिखाई दे रहा है।

आसपास केले के दिखाई दे रहा है।

साथ ही साथ साइड में कुछ मिट्टी बिखरी हुई है।

और नीचे की और एक छोटी सी रोड चल रही है।

ईट लगाया हुआ है नीचे--

यह अच्छे से घर दिख रहा है।

और दरवाजे में पर्दा लगा रखा है जोकि थोड़े बहुत स्काई ब्लू की तरह दिख रहा है।

जिसमें कुछ इंजने दिख रही है।

एह आदमी ख ब देख रहे है गाड़ी को।

यह एक बड़ा सा घूमने का एरिया जैसा दिख रहा है।

जो कि बाहर से गेट लगा रहता है।

शायद कोई एक कैफे हो सकता है।

घर के बाहर डाइनिंग टेबल है दोनों घरों में।

रंग बिरंगे लाइट जल रही है।

साथही साथ बलून के द्वारा बहुत खूब सुंदर ढंग से सजाया है।

यहां कोई सैलून दुकान जैसा दिख रहा है।

टेबल पे तीन बोतल है पानी।

प्लेटें लगा है जिस पे नाश्ता दिख रहा है।

यहां पर कुछ मशीने दिख रही है।

जोकि गोल गोल ड्रम की तरह है।

पाइपे दिख रही है जो कि लोहे कि हो सकती है।

एक डाइनिंग टेबल पे एक व्यक्ति बैठा है।

जहां पर रनिंग करने के लिए वर्कआउट करने के लिए कुछ मशीनें दी गई है।

हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हाल हो।

और साथ ही साथ एक गाड़ी दिखाई दे रहा है।

तीन ए_सी दिख रही है।

यहां कोई एक बस स्टैंड की तरह दिख रहा है।

देखने में यह कुछ डेकोरेट किया है।

कपड़ों द्वारा अच्छी तरीके से सजाया है।

तथा रोड दिखाई दे रहा है।

आस पास में एक रोड दिख रहा है।

यह कोई एक बड़ा सा सिटी सेंटर की तरह दिख रहा है।

से बहुत सारे लोग चल रहे हैं।

साइड में एक फैन दिख रहा है।

स्कूल के बगल में एक टावर की तरह दिख रहा है।

यह एक जिम सेंटर दिख रहा है।